एक आदमी है जिसने पिंक कलर की टी -शर्ट पहनी हुई है और पीछे की तरफ जिम नजर आ रहा हैंइसमें काफ़ी सारी मशीनॆ वगैरह नजर आ रही है।

सामने की तरफ बोर्ड भी नजर आ रहे है ये किसी बैंक का बोर्ड नजर आ रहा है सामने की तरफ काफी सारे पेड़ वगैरह है कुछ इमारते बनी--